और जिसमें दो कटोरी दी गई है एक कटोरी रायते की है एक कटोरी चटनी की है और सामने एक आदमी बैठा हुआ है लाल कलर का कपड़े पेहेन कर --

ड्राइंग की और यहाँ पे सीटों की ब्रश भी दिखाई दे रहा है जैसे आप बहोत सारे ड्राइंग बना सकते है और वो तीन सेल बने कबर्ड के जिसके स्टेशनरी कहा जाता हैं।

छत्तीसगढ़ का म्यूजियम दिखाई दे रहा है जहां पे एक दो तीन चार पांच छे छे आदमी बैठे हुए है जिनके हाथ में ढोल है और सिर्फ एक आदमी के हाथ में गिटार है।

ये बस खड़ी हुई है परफेक्ट लिखा हुआ है।

ये एक मंदिर बना हुआ हैजहाँ पे श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए--

और आसापास बड़े बड़े ट्रीज हो रहा है और साइड में फाउंटेन बना हुआ है और एक बड़ा लाइट का पिलर हेगा और साइड में बना हुआ है और के साइड में एक रास्ता बना हुआ है जो बीच पार्क में ले आता हैं।